ये एक कॉलेज के रूम का पिक --

और कुछ बैगों में समान भरा हुआ है।

ह प्लेट में दो चम्मच रखे हुए हैं एक कांटा चम्मच एक दूसरा चम्मच--

इस पिक में एक छोटा सा त्यौहार मनाने के लिए इस जगह को रेडी किया गया--

ये एक हॉस्पिटल का पिक है यहां हॉस्पिटल में दो बेड दिखाई दे रहे हैं।

और भी डेकोरेट करने के लिए बहोत सारे हार--

और एक साइड पे मोटरसाइकिल लगा हुआ हैं।

और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है।